सड़क के किनारे भारी घर दुकान मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं यह सुबह का समय है नीला नील अंबर।

यहां पर खाने का सामान भी रखा हुआ है। हलवाई लड्डू बनाते हुए नजर आ रहा हैं। यहां पर पंखे लगे हुए है।

जैसे कि यहां पे सिस्टम रखा गया है।

फोन रिचार्ज होते हैं यहाँ पर फोन से रिलेटेड हर--

यह तस्वीर एक कलरफुल सी छोटी सी तस्वीर दिखाई गई है जैसे कि आप देख सकते हैं।

अ कंप्यूटर सिस्टम रखा गया है और यहां पिज़्ज़ा के बहोत सारे डब्बे रखे गए हैं।

और सीढ़ियों से उ नीचे की साइड उतर कर बेसमेंट में यह--

गर्ल्स की ड्रेसेस और टी शर्ट्स टाइप की हैंगर्स में--

यह तस्वीर किसी ढाबे कि दर्शाती है जैसे की तस्वीर में देख पा रहे हैं।

यहां पर नीले नीले आसमान की तस्वीर सुबह का समय दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर रिचार्ज की दुकान की है जैसा की तस्वीर में देख सकते हैं यहां पर फोन स्पीकर --

यहाँ पर दुकानदार रिचार्ज के साथ साथ--

सामने ही साथी में फैन्स रखे हैं और व्यक्ति यहां पर खाने पीने की चीजों को बास्केट में डालते नजर आ रहे हैं।

जिस टेबल चेयर रखी गई हैं यहां पर कंप्यूटर सिस्टम रखा है यहां पर व्यक्ति वर्कर अपना वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ एक सुंदर सा रेस्टोरेंट दर्शाया गया है जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं।

अह कंस्ट्रक्शन कार्य कंस्ट्रक्शन का सामान रखा गया है।

काम करते हुए नजर आ रहे है।

चलती फिरती मार्केट में नजर आ रही--

जैसा की आप समझ ही पाएंगे की यहां पर--

नेशनल अकैडमी की तस्वीर दर्शायी गई है।